और साथी में एक हल्के नीले रंग की दीवाल भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सी सब्जियां भी रखी हुई हैं।

येहे एक शोरूम का चित्र लग रहा है।

साथ ही में सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग का रंग सफेद है।

साथ ही में कुछ सफेद रंग की गाड़ियां आती हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर दो बोर्ड्स भी लगे हुए हैं।

और साथ ही में पंजाब नेशनल बैंक का ए_टी_एम भी है।

हल्के भूरे रंग के सोफे के पीछे एक और सोफा रखा है।

साथ ही में आसपास बहुत से पेड़ लगाए गए हैं।

इस चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है।

और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ गाड़ियां भी है।

एक व्यक्ति इन पर दवाई छिड़क रहा है।

वह मैट पर बैठकर योगा कर रही है।

इस कैफे के बोर्ड पर बहुत ही सुंदर कैफे का चित्र कॉफी का चित्र बना है।

इस चित्र में चारों ओर हरे भरे पेड़ों का घने घने पेड़ों का जंगल भी दिखाई दे रहा है।